ये किसी मार्केट का हटिया का है जिसमें कि बहुत सारा सामान बिक रहा है और एक टेंपू खड़ा है एक गाड़ी है इधर साइकिल है बहुत भीड़ लगा हुआ है।

त्रिदेव स्टोर इसमें माला सब का है मतलब फुल पत्ती सब मिलता है यहाँ माला फुल पत्ती फोटो अंदर भी किराना दुकान है आगे दो तीन एक गाड़ी खड़ा है।

ये कोई उम कोई हॉस्पिटल वोस्पिटल का है जिस पे की ऊपर लिखा है उ यू.एम.ऐ उमा और साइड मैं रोड के साइड एक ग्री ग्रील वाला बाउंड्री है।